अ तौलियाँ हैं। कुछ छोटी रुमाल है और यहां पे एक घड़ा है पानी वाला टंकी और यहां पे --

यह एक शोरूम है स्कूटी का यहां पे कुछ स्कूटी --

यहां पे एक छत है वाइट कलर की उसपे व्हाइट कलर की रॉड लगी हुई है उसपे एक वाइट कलर का पंखा लगा हुआ है।

यहां पे ऑरेंज कलर की दो सीट है।

इनपे लेट के दांतों का चेकअप होता है।

और कुछ लोग ऊपर बैठे हैं और इसके आसपास ब्लू कलर की रेलिंग है।

यहां पे एक फोर वीलर है जो कि खुली हुई पड़ी है।

शायद सर्विस हो रही है और यहां पर दो पहिए हैं।

व्हाइट कलर के और बड़ा सा एक झोला है ब्लू कलर का।

ये तीन पिंक कलर की चार पिंक कलर की बोतल है और एक सिल्वर कलर का ग्लास है।

और टिन पड़ी है और लाइटे लगी है सूर्य ऊर्जा पैनल है यहां पे कुछ लोग खड़े हुए हैं।

यहां पे छोटी छोटी दीवार है इनपे लोहे के रेलिंग बने हुए है।

यहां पे एक बड़ा सा वाटर पार्क है और यहां पे स्लाइड करने वाली है बढ़िया है इसपे लोग बच्चे स्लाइड करते हैं यहां से।

और सायद पिलर बना रहे हैं मसाला डालकर और ड्रम दो हैं।

कुछ विंडो में सामान रखे हैं बॉक्स मे।

ट्रक में डीजल डाला जा रहा है कुछ बाइक वाले भी डीजल डला रहे हैं कुछ जा रहे हैं एक पेट्रोलियम टैंक भी है ब्लू और वाइट कलर का भारत पैट्रोलियम ।

बहुत बड़ी जिसके में कुछ खुद नहीं बता सकता ये कितनी बड़ी है लेकिन बहोत बड़ी है।